आप ख सकते है यह विद्यालय है जिसमे बाउंड्री घुमाया गया है साइड में मैदान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है।